मुझे इस तस्वीर में टेबल में रखे हुए प्लेट में एक पराठा और चटनी दिखाई दे रहा है केले के पत्ते में रखते हुए।

ऊपर में पंखा भी नजर आ रहा है।

इसमें एक इंसान कुर्सी में बैठे हुए और फोन अपने हाथ में लेते हुए भी नजर आ रहा है।

इस घर के आगे सीमेंट से बनाया हुआ के बीच में बहोत बड़े बड़े बैलून भी लगाया हुआ है।

आस पास में पौधा भी उगा हुआ है।

दीवार में पोस्ट भी चिपकाया हुआ है।

उस घर के अंदर लाइट्स भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के सामने बहुत बड़े बड़े पेड़ भी लगा के दिखाई दे रहा है।

दूसरी तरफ बहुत सारे बाइक्स और स्कूटी भी नजर आ रहा है।

कमरा का आगे ग्लास में ए_बी_एस साइबर कैफे और उसका कांटेक्ट नंबर लिखते हुए नजर आ रहा है।